यह बहुत ही बड़ा दुकान है इसमें हर प्रकार के सामान मिल सकती है अंदर जनरल सामान लगभग मिल सकती है एक चेयर्स भी है।

यह काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ है एक नहीं अनेकों टीचर इस तरह धरती में उपाया हो चुके हैं ।

आर.एन.आई.सी.यू. और पि.यू.सी.यू. महावीर का यह बहुत ही बड़ा यह चौबीसो इंटू सात इसमे आपको दिया जाएगा सर्विस अब चौबीसो घंटा में जब भी आए अपना सर्विस पाएं।

और एक आदमी देखिये किस तरह इसको विल के अपने बाजू के सहायता से इसे और ऊपर ढकेल रहा आस-पास के जो सलेंडर्स में हवा भरने का सलें सेलेंडर है बहुत ही बड़ा बिल्डिंग लग रहा है।